इस इमेज में दिखाई दे रहा है की यहाँ पे एक बहोत बड़ा गेट है और इसके --

पौधे लगे हुवे हैं जो की ग्रीन कलर के हैं।

और मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है।

और एक लेडीज और एक जेंट्स के हाथ में झोला है।

स्कूटी रखी हुई है एक लेडीज स्कूटी पर बैठी हुई है एक जेंट्स ई दुकान के अंदर जा रहा है यहाँ पे डस्टबिन रखी हुई है बाहर।

और सीढ़ाव दिखाई दे रहे हैं।